ये एक फौजी नौजवान का मुजस्समा है जो कि यादगार चौक पे है।

यह एक जिम का अंदरुनी मंजर है जिसमें बहुत सी मशीनें रखी गई हैं ताकि--

घरों के सामने खुली फिजा मे शमयने टेंट ओर कम्कम लगा के इसकी सजावट कि गई है।

हवा देने के लिए पंखे भी मौजूद हैं ऐसा लगता है गर्मी का मौसम है।

हर वक्त चीजों से भरा रहता है इस दुकान पे बहुत ही रश होता है लेकिन आज रश पाया नहीं जाता।